छोटे छोटे जंगल भी बहुत सारे निकल कर है।

यहां बहुत सारे लड़के खड़े होकर है

यहां एक रोड भी बना हुआ है।

यहां छोटे छोटे पार्टीशन में रूम दिखाई दे रहे हैं।

यहां लंबे लंबे लोहे लगाकर है।

हां कच्चा घर भी दिखाई दे रही है।

उन दोनों ने सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

यहां ऊपर में बहुत सारे लाइट्स भी लगाकर है।

यहाँ बहुत सारे आदमी फुटबॉल खेल रही हैं।

मुझे यहां पर लाल कलर का बाइसाइकिल भी दिखाई दे रहा है।

नीचे में बहुत सारे प्लांट्स निकल पड़े हैं।

मुझे यहां डेयरीमिल्क और चॉकलेट दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर देवी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

एक कंप्यूटर भी रखा है।

लोहे का दरवाजा भी दिखाई दे रही है।

मुझे छोटे छोटे ग्रास भी दिखाई दे रही है।

कलर का पर्दा लगाकर है।

यहां होनबिल का मूर्ति भी बना हुआ है।

इसके सामने बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

इस पिलर को अलग अलग डिजाइन किया गया है।

यहां एक माउस भी रखा हुआ है।

यहां सफेद कलर के पर्दे लगाया हुआ है।

बहोत सारे बिस्तर दिखाई दे रहे हैं।

पर एक आदमी खड़े होकर दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रही है।

में मुझे जूस भी दिखाई दे रही है।

ये एक टीचर इन लोगों को परा रहा है।

आगे में एक सफेद कप सफेद कपड़ा और ब्लैक कलर का पेंट पहन के है।

पीछे मैं बहुत सारे पेड़ पौधे निकल के हैं।

इसमें एक पाइप लगा कर है।

अंदर में बहोत सारे बक्सा रखा हुआ है।